मुझे छह लड़के दिखाई दे रहे है जो की पिंक कलर की गुलाल मे हम्म गुलाल डला हुआ है। उन--

इमेज मे मुझे एक नदी दिखाई दे रही है। नदी मे लकड़ी की एक बहुत बड़ी नाव है। उसमे बहुत सारे आदमी बैठे अह हुए दिखाई दे रहे है। जो की बड़ी सी लकडी सी रखे हुए है। जिसको पकड़े हुए है।